पीले रंग की चादर लगी है नीचे गमले दिख रहे है पिछे काफी बड़े पेड़ नजर आ रहे है एक व्यक्ति खड़ा है नीले रंग के शर्ट पहनकर।

यह एक पार्क दिख रहा है जिसमें तीन- चार मूर्तियाँ दिख रही है एक मूर्ति ऊपर चबूतरे पर रखी है उसके नीचे--

यह एक नदी दिख रही है नदी के आस-पास काफी घने पेड़ नज़र आ रहें हैं।

ये कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैबच्चे जो फोटो खिचवा रहें हैएक व्यक्ति बैठे हुए है जो पीले रंग की शर्ट पहने हुए हैं उनकी नारंगी रंग की---